बैठने वाला बेंच बना हुआ है साइड में टाइल्स लगा हुआ है।

साइड में हमे एक मोबाइल फ़ोन देखने को मिल रहा हैं वही पर हमे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखने को हमे वहाँ पर मिल रहा हैं ।

ट्रैन के पास में हमे एक बड़ा सा खम्बा देखने को मिल रहा है वही पे हमे एक बहुत सारे यहाँ पे हमे पेड़ देखने को मिल रहे है।

वहींपर हमे एक कैरट देखनेको मिल रहा है एक आदमी देखनेको मिल रहा है जिसने माथा में लाल रंग का गमच्या बांद कर रखा है।

मंदिर के ऊपर झंडा लगा हुआ है मंदिर के ऊपर एक लैंप भी लगा हुआ है मंदिर के चारो साईड पेड़ लगे हुए है।

ये यहाँ पर एक बेंच ढकने के लिए आरा हैं वही पर पानी वाला टाइम देखने पे नजर आ रहा हैं ।

अंदर में एक गेट बना हुआ है बाहर में एक बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं ऊपर में एक लैंप लगा--

हमें यहा पर एक स्टेज देखने को मिल रहा है स्टेज के उपर दो लड़के चड़े हुए है ।

व्हाईट कलर का टीशर्ट पहन रखा है और व्हाईट कलर का हाफ पैंट पहन रखा है और ब्लैक कलर का चप्पल भी पेहन रखा है। ऊपर में हमे--

दीवाल पे हमे बहोत सारे फुलीन बहोत सारे पिक्चर्स लगे हुए देखने को मिल रहा है साइड में हमे एक पुष्टि वहा पे देखने को मिल रहा है।

साइड में हमे एक पिकप देखने को मिल रहा है व्ही पर हमे एक फोरविलर भी देखने को मिल रहा है।

हमे यहाँ पर एक छोटासा टेबल बैठनेवाला देखने को मिल रहा है साईड में हमे यहाँ पर टेबल देखने को मिल रहा है लोहे का।

यहां जिसते ऊपर एक टंकी रखा हुआ है यहां पे एत पाइप देथने को मिल रहा है जीसते ऊपर--

नीचे में हमें देखने को मिल रहा है साईड में हमें एक बड़ा सा वाशिंग मशीन देखने को मिल रहा है।

हमें यहां पे एक आदमी का फोटो दिख रहा है जिसने व्हाइट पिंक कलर का शर्ट पहन रखा है।

बहोत सारे बाज़ भरे हुए है जो सभी के ऊपर सभी तरह के झंडे लगे हुए है एक के ऊपर लाल लगा हुआ है साइड में उनके मोटरसाइकिल हमे देखने को मिल --

हमे यहा पर तरेन देखने को मिल रहा है तरेन के उपर हमे देखने को मिल रहा है।

कुछ थेई इस ट्रक में हमे बहोत सारी हमे सीढ़िया देखने को मिल रहा है।

साईड में हमे बड़ासा टोल देखनेको मिल रहा है वही पर हमे बोहोत बडासा तार का पेड़ हमे यहाँ पर--

हमें यहां पर एक सर्विसिंग सेंटर देखने को मिल रहा है साइड में हमें एक फोर व्हीलर यहां पर देखने को मिल रहा है।

हमें यहां पे एक मंदिर देखने को मिल रहा है मंदिर के ऊपर हमें एक झंडा देखने को मिल रहा है इंडिया का।

यहाँ पे एक लड़का हैं जिसने ब्लू कलर का टी शर्ट पहन रखा हैं और ब्लू अ जीन्स भी पहन रखा हैं ।